यह सरक है सरक पे एक मोटर साइकिल जाती हुई दिख रही है जिसपे ये एक आदमी है जिसने सफ़ेद रंग का --

इनके बगल में हमे एक खिड़की दिखाई दे रही है जो दोनों तरफ हैं।

एक ने हाफ स्वेटर रखा है और उसके बगल में एक ढाबा है।

और मंदिर एए के चारो तरफ बाउंड्री है।